यह जिम का कॉनटेलर है इसमें लोग जिम करते हैं योगा करते हैं।

यह मशीनें बहुत सारी रखी हैं येलो कलर की मशीन है तीन येलो कलर की मशीन है और --

बोरियाँं रखी जा रही हैं एक औरत हैं जो बोरी लेकर सिर पर जा रही है और एक लॉरी में आदमी खड़ा है।

यह कोई फैक्ट्ररी है जिसमें कोई पॉलिथन है जो--

हैंगर पर टँंगी हुई हैं और हैंगर है एक गाड़ी-लॉरी है जिसमें ये आदमियाँं बोरियाँं डाल रहे हैं।

और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मंदिर टाइप का लग रहा हैये कोई मंदिर है प्रिचलित मंदिर है--

यह मोटर साइकिल की शो-रूम है जिसमें बहुत सारी मोटर साइकिल रखी हुई हैं।

यह एक बिल्डिंग खड़ी हुई है बिल्डिंग में व्हाइट कलर का और रेड कलर का पेंट लगा हुआ है।

दो-तीन खिड़कियाँ हैं दो गेट -तीन गेट हैं तीन खिड़की तीन गेट हैं एक आदमी बैग टाँंगे जा रहा है।

स्टेज पे जा रही हैं कुछ जज़स बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं।

मैट कार मैट पर बिछ के वो योगा कर रहे हैं।

ये ब्लू मेंडिक्स से अंग्रेजी दवाई खाना है यहाँ पे दवाई खाना मतलब दवाई खाने का मतलब यही होता है--

इसमें बहुत सारी लाइटिंग लगी है बहुत सारे खाने का बरतन रखे हुए हैं।

दुकान है किस चीज है ये तो नही दिखाई दे रही है पर दुकान है और ऊपर मकान है।

पिंक कलर के ऊपर बैठे हुए बढ़िया डेकोरेट है।

यह कोई दुकान है जिसमें पेंसिल रबर कटर कुछ स्कूल की किताबें--

और सामने बहुत सारी फील्ड खाली हुई है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।

और एक में इन लोगो को योगा बता रहे हैं पिंक कलर का कार मैट बिछा हुआ है।

यह एक रूम है रूम में एक पलंग रखा है छोटा सिंगल बेड ।

ये नाइट का गार्डन लग रहा है जिसमें लाइटि याँ बहुत सारी जल रही हैं।